ये एक पहाड़ी सीन है जो नीचे है एक लंबी सी नदी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है पूरा खतरनाक खतरनाक लाइट लगाया है।

यह एक राइस मिल है जो की नीली कलर के कारकेट से इसे बनाया गया है पूरी तरह ढका हुआ है।

बाहर में एक बैनर भी लगा हुआ है जो लक्ष्मी गार्डन लिखा है।

वहां पे ढेर सारे पानी का बोतल रखा हुआ है और कैंटीन एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यहां बहुत सारी लड़कियां अलग अलग ड्रेस पहन कर बैठे हुए हैं।

पूल के गजरा लगा के एक कलर का साड़ी पहन के डांस वाले व्यक्ति है ये।

यहां पूरा चुनमुनिया लगा हुआ है हर एक घर पे चुनमुनिया है और बगल में नीली कलर का चुनमुनिया लगा हुआ है।

हाथ में एक रेड कलर के टी शर्ट है और काले रंग के पेंट पहने हुए बच्ची अंदर जा रही है।

और यहां पर ये ज़ेरॉक्स का मशीन रखे हुए हैं।

बाहर से इसका बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाया है और इसमें बहुत सारे खिड़की भी है।

और लोहे का कलर बाकी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में और साइड में बहुत लोहे लक्कड़ भी हैं।

ये पहाड़ का सीन है जहां पहाड़ को काट काट कर सीढ़ी बनाया गया हैं।

और इनके हाथ में हथौड़ी है और छेनी है।

और यहां खाने पीने और फल फ्रूट का भी सामान रखा हुआ है।

और नीचे बहुत सारे डब्बे में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और नीचे में बहुत सारी कॉपियां है।